यहाँ पे दो दो-तीन गाड़ी है और बहुत सारा लोग है बड़ा सा बस है यहाँ दो टेम्पूल है दो कार है।

लो कोपिया का दुकान है। कलम मार का जहाँ हम्म हम्म बॉक्स का है।